और यहां पे एक कूलर भी नजर आ रहा है।

यहां पे कुछ लैपटॉप्स भी नजर आ रहे हैं।

एक दरवाजा दो खिड़कियां भी नजर आ रही हैं।

और इसके ऊपर एक बैनर्स लगा हुआ नजर आ रहा है।

इसमें एम_आर_एफ रजनीगंधा टायर्स लिखा हुआ नजर आ रहा--

इसमें दरवाजे खिड़कियां बहुत सारे नजर आ रहे हैं।

बाइक शोरूम का दृश्य है।

इसके बगल में एक बिल्डिंग भी नजर आ रहा है जिसमें--

एक मोबाइल दुकान का शॉप का दृश्य है।

पार्लर का दुकान है।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

उसमें बहुत सारे चेयर और टेबल लगे हुए हैं।

दो लेडिस भी नजर आ रहे हैं जिसमें एक साड़ी पहनी हुई नजर आ रही है और दूसरी सूट पहनी हुई नजर आ रही है।

व बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

ग्राउंड भी नजर आ रहा है।

शोरूम में एक अलग अलग डिजाइन के बाइक्स नजर आ रहे हैं।

और इस शोरूम के बाहर एक गाड़ी खड़ी नजर आ रही है।

बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

ये कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे है।